यह एक दुकान है यह दुकान बहोत ही बड़ा है इस दुकान में सभी प्रकार की खाने-पीने की वस्तुए मिलती है।

जोकि बहोत ही खूबसूरत दिखते है इस जगह में सभी प्रकार की सुविधाए भी उपलब्ध कराई गई है।

इस पार्क में ज्यादातर बच्चे घुमने के लिए आते है जोकि इस पार्क की ख़ूबसूरती को देखने के लिए आते हैं।

इस नदी के इस पार से उस पार जाने और आने के लिए नाव की सुविधा भी उपलब्ध है।

यह एक पार्क का इलाका है यह इलाका बहुत ही खूबसूरत --

यहाँ पे बाहर में गाड़ियाँ भी खड़ी करने की भी जगह है यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते--

टॉयलेट भी बहुत ही अच्छी --

यह एक घर है यह घर बहुत ही खूबसूरत है इस घर के बाहर में एक पेड़ भी लगे--

इस घर के साइड में गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी जगह --